जिसके आसपास कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक मैरिज हॉल दिख रहा है जिसमें एक स्टेज बना हुआ है।

बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं।

कुछ एक्सरसाइज करने की मशीनें रखी हुई हैं।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

डमी कपड़े पहने हुए खड़ा दिख रहा है।

सड़क पर साइकिल रिक्शा खड़े हुए दिख रहे हैं।

पीछे कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी दिख रही हैं।

कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।